यहाँ एक बहुत बड़ा रूम है इसमें काफी सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे परफ्यूम है हार्पिक है फेस वॉश है।

यहाँ एक सोना रोड़ है यहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई है--

ये घास है और काफी रोड ये सब गारे गारे का लग रहा है बहुत कच्चा रास्ता है ये।

खिड़कियां टाइप हैं। बहोत बड़े बड़े बॉक्स है जाली के और यहां पे काफी साफ साफ है। यहां पे फिलहाल अभी कोई नहीं--

यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं बहोत घने घने बहोत खूबसूरत लग रहे हैं का रोड भी काफी--

काफी ज्यादा धुंधल टाइप हो रहा है हल्की-हल्की सी धूप निकल रही है।

चार मंजिल बना हुआ है चार फ्लोर है इसमें वी टू लिखा हुआ है।

वैल्यू एंड वैरायटी और यहां पे बहुत सारे लोग भी है बाहर खड़े हुए हैं टू व्हीलर --

पाठ है कटोरे में चम्मच लगा हुआ है इसमें--

यहां पे घर के बाहर बहुत हरियाली के बाउंड्री हो रखी है छोटे-छोटे पौधों से--

यहां एक बहोत बड़ा ग्राउंड है एक स्टेडियम ज--

मशीन है उन्होंने वाइट शर्ट पहना हुआ है ब्लू जींस --

महात्मा गांधी की दिख रही है बेल ब्लैक कलर के आर्टिकल से बनी हुई है यहां पे--

बहुत बड़ा रूम है यहां पे बहुत डिजाइनर टाइप की लाइट्स वगैरह लगी हुई है।

एक हाईवे रोड है बहुत बड़ा रोड है आसपास ।

बीच के ऊपर का व्यू है यहां पे नीचे नदी है जो कि बहुत भरी हुई काफी सादा पानी है।

रोड पर काफी ज्यादा गाड़ियां है फोर व्हीलर्स कार्स है टू व्हीलर्से --

पार वगैरह भी हैट्रेक्टर वगैरह दिख रहे है काफी सारे खड़े हुए है यहाँ पे ग्राउंड है बहोत बड़ा।

चॉकलेटी कलर की बहुत प्यारी लग रही बहुत।

बहोत विशाल मूर्ति इसके सामने सब छोटे लग रहे है यह मूर्ति बहोत खूबसूरत लग रही है बहोत प्यारी बहोत विशाल मूर्ति है यहां पे कैमरे वगैरह भी लगे हुए--

काफी लोग है जोकि अंदर की ओर मूर्ति पे हाथ रख रहे हैं प्रार्थना कर--

आसपास यहां प एक लेडीज है जिसने मास्क भी लगाया हुआ हाथ में पर्स वगैरह यहाँ पे काफी लोग है जिन्होंने मास्क लगाया।

बंकी के साथ गैस चूला रखा हुआ है रेगुलेटर लाइटर वगैरह है और यहां पे एक नेता वगैरह जो।

के लिए लड़कों के लिए लड़कियों के लिए काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर टैडी है।

और यहां पे कार खड़ी हुई है और यहां पे नॉकडाउन मटेरियल आर्ट एकेडमी का एक लोगो लगा हुआ है।

यहां एक बहुत ज्यादा बड़ा ग्राउंड है।